और यहाँ पर पानी है जो की नीले रंग का है आसमान सफ़ेद नीला बैगनी और सिलेटी रंग का है यहाँ पर पहाड़रुमा रोड गया है।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

तथा यहाँ छोटे-छोटे घर बने हुए है जो कि सफेद रंग के दिख रही है।

जैसा की मैं देख पा रही हु यहाँ पर ये ग्राउंड है जो की यहाँ पर मिट्टी तथा घाँस से बना हुआ है घाँस जो हैं यहाँ हरे रंग की और मिट्टी जो है।

पिले रंग के है बहुत सारे लोग इस ग्राउंड में खड़े हुए है जो की छोटी-छोटी आकृति में दर्शित हो रहै है पीछे बड़े-बड़े पेड़-पौधे लगे हुए है।

और बादल छाया हुआ है।

जैसा की मैं यह देख पा रही हु यहाँ पर ये पानी भरा हुआ है तथा यह हरे रंग का दिख रहा है क्यूंकी घाँस के कारण सूर्य की किरणे पड़ रही है।

पानी जो है वो चमकदार है।

और एक सी_सी_टी _वी कैमरा टी_वी लगी हुई है जोकि काले रंग के टेलीफोन रखा है काले रंग का हैं।

एक खम्भा खड़ा है जो की ऑरेंज रंग का है तथा आसमान बैंगनी नीला और सफेद दर्शित हो रहा है।

जैसा की मैं देख पा रही हु यह एक एग्जिबिशन जहाँ पर मूर्तियों का सामान लगा हुआ है और यह काले तथा भूरे रंग की है।

जैसा की मैं देख पा रही हूँ यहाँ एक फल की दुकान है जहा पर बहुत सारे फल लगे हुए है संतरा खीरा अनारा अमरुद --

सामने ऊपर आसमान नीला और सफेद हैं तथा एक खम्बा खड़ा हुआ है सिलेटी रंग का और यहाँ की मिटटी जो हे पिले रंग की है।